बिल्डिंग के बीच में एक बैनर लगा जिस पर एच.डी.एफ.सी बैंक लिखा है।

सामने एक व्हाइट कलर का गेट लगा हुआ है। बहोत सारी बाइक और स्कूटी खड़ी हुई हैं।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

यहां पर हमें एक गेंडा दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही बड़ा है।

अ कार्टून के पुतले रखे हैं जिनपर --

सड़क है। सब्जी की दुकान पर बोहोत सारी सब्जियां --

रखी हुई है। पीछे एक दीवार पे जे.एस. लिखा है।

बुधानु लिखा हुआ है।

अराउंड बनी है बनाकर बैठी हुई नीचे फर्श पर दिखाई दे रही हैं।

एक अध्यापिका सामने खड़ी है जिन्होंने मास्क लगाया और साड़ी पहनी हुई है।

अम् लड़की दिखाई दे रही है और बहोत सारे बैनर लगे हुए हैं।

यह मॉल की तस्वीर है। सामने एक बैनर लगा है।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

आम् शों-शोरूम दिखाई दे रहा है। शोरूम के-ए ऊपर --

म्म गेट लगा हुआ है जो कि लोहे का है। सामने सड़क है जिस पर एक व्यक्ति जा रहा है और एक ऑटोरिक्शा

लिखाया दिखाई दे रहा ह। एक बिल्डिंग बोहोत ही बड़ी हैं।

बना हुआ है जिस पर एक बड़ा टावर बना हैं।

सामने कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं और गार्डन में हरी भरी --

सफेद बादलों की परत छाई हुई है टावर पर कुछ --

आ जिसके साइड में एक और प्लेट रखी है।